आदमी हैए बड़े-बड़े आदमी हैए ।

इधर आंध्रा बैंक ए_टी_एम हैए बाइक्स हैए कार हैए ।

ऑरेंज कलर ओ पिंक कलर फ्लावर्स हैए ।